एक कंगारू की बना हुआ है। कुछ बन्दर के बने हुए हैं। कंगारू सफ़ेद कलर का है बन्दर पीले कलर का है।

रोड है रोड सफ़ेद कलर की है कांच है यह सर्विस सेंटर है।

सफ़ेद कलर की काले कलर की इस एक्टिवा पे कांच लगे हुए है और सी_बी_जे --